अह शोपीस के अह हैं बहुत सारी लाइट लगी है और भगवान की तस्वीरें हैं।

पानी बोतल है एल्यूमिनियम वाली कुर्सी लोहे वाली लाल कलर का नीचे कारपेट है।

वगैरा वगैरा लाल रंग की महिला ने साड़ी पहेन रखी पंडित दिखाई दे र--

एक आदमी है जिसने ब्लू कलर कपड़े और जूते पहने हुए हैं।

पीछे के बैकग्राउंड में बिल्डिंग है बिल्डिंग के पीछे पेड़ है।

जो खड़ा है उसके हाथ में कैंची है उंगली में अंगूठी है कड़ा है गले में माला है।

ये एक खेत है इसमें बहुत सारे पौधे हैं बहुत सारे आदमी हैं मिट्टी में काम कर रहे काले कलर की थैलियां रखी हैं चारों तरफ--

ये एक जंगल है जिसमें एक बड़ा पहाड़--

दो टुकड़े दो तीन टुकड़े हुए छोटे छोटे पाठ है। एक सूखा पेड़ा छोटा सा जिस पे एक--

पीला नीचे बहुत सारा मिट्टी है लाइट ग्राउंड में पानी दिखाई दे रहा है छोटे छोटे पौधे हैं बड़े पेड़ --

इसका बोर्ड कुर्सी वगैरा हैं मेज वगैरा स्टूल है लाइट तिरंगा झंडा छपरा साइड में एक दुकान है उसका--

ये दो ओ बैंक दिखाई दे रहे है एक केनरा बैंक है एक मुथूट फाइनेंस बैंक है मुथूट फाइनेंस के बाद एक और बैठी है केनरा बैंक --

कटोरी मग जग पंडित किताब केले के पत्ते छोटा मटका थाल--